पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां यहाँ यहाँ पे कई सारी खिड़कियां--

सीढ़ी रखी हुई है यहां पे एक लोग खड़े हुए नजर दिखाई आ रहे हैं यहां पे एक नीले कलर का टब भी रखा हुआ--

दिखाई दे रही है उसमें हरी-हरी लंबी-लंबी पत्तियाँ भी दिखाई दे रही हैं एक नीले कलर की क्रेट पर रखा हुआ है क्रेट --